ये स्टेज का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर नीचे को चुन्ने लाल काला कार्पेट बिछा दिख रहा है और उसके ऊपर एक व्यक्ति डांस करते हुए दिख रहा है और उसने सफेद कलर की ड्रेस पहनी हुई दिख रही है।

किसी कॉफी शॉप का या किसी कैफे का फोटो दिखाई दे रहा है जहां अंदर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में एक कप दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर नारी निशान बना हुआ है उसकी जेब में मोबाइल फोन का कवर रखा हुआ दिख रहा है।

--कुछ कहे चम्मच दिखाई दे रहे हैं कुछ च दो चाय के कप दिखाई दे रहे हैं एक पानी की बॉटल दिखाई दे रही है पास में कुछ मसाले के डब्बे दिखाई दे रहे हैं पीछे की दीवाल पे कुछ टैटू और कुछ निशान बने दिख रहे हैं तस्वीर बनी दिख रही है जिसमे कुछ सीनरी है।

शादी का स्टेज बना हुआ दिख रहा है जिसे अंदर स्टेज के ऊपर कुछ चेयर रखी दिख रही हैं कुछ उधर रखे दिख रहे हैं और हाथी बम लागे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे स्टेज का फोटो दिखाई दे रहा है शादी का स्टेज दिख रहा है जिसके अन्दर एक दूल्हा खड़ा दिख रहा है उसके गले में कुछ वरमाला पहने कुछ फूल की माला पिनी हुई दिख रही है सर पे पगड़ी पहनी हुई दिख रही है।

पीछे कुछ परदे लगे दिख रहे हैं उसके ऊपर फूल से सजा रहा है जिसमे पीले सफेद और लाल कलर के फूल लगे हुए दिखाई दे रहे है पीछे एक ब्लू कलर का सोफा दिखाई दे रहा है जो दूल्हा-दुल्हन के बैठने के दिखाई दे रहा।

सामने एक डंडा लगा है जिसके ऊपर से कुछ लाइटों की झालरे जाती हुई दिखाई दे रही है नीचे लोग खड़े दिखाई दे रहे है आस-पास कुछ--

एक पंडित जी दिख रहे है जिनके आगे माइक दिखाई दे रहा है जिस के सामने टेबल रखा दिख रहा है जिसके सामान भी दिख रही है साइड में हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है उसके पास में--